यह फोटो किसी बस स्टॉप की लग रही है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि बहुत बड़ी दिख रही है।

यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पंखे लगे हुए है।

ये बिल्कुल वाइट दिख रही है।

साइड में बहुत ही अच्छी अच्छा --

बहुत अच्छी तरह से शॉप पे रखी गई है।

जो कि एक रूम में बहुत सारे लोगों को योगा सिखाया जा रहा है।

दो गमले रखे हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहे है।

जिस कमरे मे बहुत ही बेहतरीन तस्वीरे लगाये गया है।

दो व्यक्ति फोन को बनाने के लिए आये हुए है।

एक व्यक्ति के एक दुकान के पास खड़े है।

यह तस्वीर किसी मस्जिद की लग रही है जहाँ पर बहुत सारे --

ये तस्वीर किसी पार्क की लग रही है।

कुछ सीढ़ियाँ नजर आ रही है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं इसके पीछे बहुत ही अच्छी --

यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से फूल को सजाया गया है।

अंदर खड़े हैं एक व्यक्ति --

एक टीचर है जो कि कुछ बता रहे है।

इसकी फोन बहुत ही अच्छी दिख रही है।

ये तो सर किसी रेस्टोरेंट की लग रही है।

जो कि बहुत अच्छी तरह से इसे डेकोरेट किया गया है।

इसके चेहरे बहुत ही अच्छी तरह से रखी गई है।

ये तस्वीर किसी कार शोरूम की है।

जहाँ पे बहुत सारी कारें रखी गई है।

यह बहुत बड़ी शोरूम नजर आ रही है।

एक दिवार में पंखा लगाया गया है।

यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी चट्टाने नजर आ रही है।

मेमोरी की को दिखाया जा रहा है।

यह क्लास बहुत बड़ा दिख रहा है।

बरस करने की समान रखी गई है।

अपना दुकान बनाये हुए है।

यह पिक्चर रात के समय का लिया गए है।

उसी गाड़ी में तेल भी डाला रहे है।

इसके फर्श बहुत ही डिजाइन किए गए है।

एक बाइक का टायर भी निकला हुआ है।

गाय बहुत ही मगन चारा खा रहा है।

ये फैक्ट्री को जाने के लिए एक रोड जा रहा है।

जो कि तीन डाक बॉक्स रखे हुए है।

तीनो के तीनो लाल कलर के है पेंट किये हुये है।

यहाँ बहुत अच्छी तरह से रूम दिख रहा है।

ये तस्वीर किसी सरकारी क्वार्टर की लग रही है।

बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है।

ये तो इनको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

यहाँ पे एक टेबल भी रखी हुई है जिस पर कुछ खाने की सामग्री रखी गई है।

एक बुजुर्ग रोड पे कुछ थैली में ले के चल रहे है।

जहाँ पे बहुत सारे फले रखे हुए है।

ये दुकान बहुत ही शानदार नजर आ रही है।

ये तस्वीर किसी जीप क्लास की है।

दिख रही है जो कि पिलर के पास खड़ी है।

ये तस्वीर किसी से बुक शॉप की लग रही है।

कुछ लोग उसके अंदर से बाहर आ रहे है।

लंबे-लंबे तार के फेर है।

एक बिल्डिंग है जिस पे बहुत सारे लोग है।

यह तस्वीर किसी कैफे से ली गई है।

बहुत सारे लोग फोटो खींचवा रहे है।

और यह बहुत ही खूबसूरत --